और तोर यहां पर काफी सारे मशीन अवेलब्ध् है और उसके नीचे के साइड में बहोत सारे डब्बे है ट्रांसपरेंट --

गाड़ी के स्टैंड है जहां पर काफी सारी गाड़ियां लगी हुई है।